एक मूर्ति बनी हुई है जो कि घोड़े के ऊपर सवार एक धनुष की है जो एक इन्सान पकड़ के बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।